ये एक बहुत ही लंबी रास्ता है इस रास्ते पे एक इंसान जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

जो पेहन रखा है और उसके दोनों साइड घने घने जंगल है और कुछ दूरी पे एक पानी का टंकी भी है।

और कुछ गाड़ी का रंग सफेद है कुछ गाड़ी का रंग काला है और इस स्टोर रूम के अंदर ऊपर मे बहुत सारे लाइट्स लगे हुए है।

एक बच्चे ने पिंक कलर की टी शर्ट और काला पैन्ट पेहन रखा है।

यहाँ पे एक पीले कलर की बहुत लंबी बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे घर नजर आ रहे है इसके बगल मे एक लाइन का पुलभी है।

और ऊपर मे कुछ तख्ते लगे हुए है जिसके अंदर बहुत सारे सीमेंट्स है यहाँ पे वर्क किया गया है।

दो तीन गाड़ियों का रंग सफेद है और इस गॅरेज मे--

बिजली का खंबा भी है और यहाँ पे सफेद कलर की भी दो तीन गाड़ियां है।

ये कोई सिटी इस सिटी मे बहुत सारी बिल्डिंग है।

यहाँ पे एक दुकान है इस दुकान का नाम तुलसी किराना जनरल स्टोर है।

यहाँ पे एक बहुत बड़ी लंबी नदी है इस नदी मे एक अ सिटी भी है और इसके बगल मे एक छोटासा रोड भी गया है।

ये एके बहुत बड़ा क्लासरूम है यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी है जो यहाँ पे लिखते हुए नजर आ रहे है।

ये एक बहुत बड़ा सा खेल का मैदान है यहाँ पे तीन चार बच्चे है किसी के हाथ मे बैट है।

कोई दौड़ता हुआ नजर आ रहा है तो कोई खड़ा है इसके बगल मे लंबी सी सड़क गई है।

कुछ बच्चों ने काला कलर का टी शर्ट पेहन रखा है कुछ ने सफेद कुछ ने पिंक --

और कुछ छोटे बच्चे है कुछ बड़े बच्चे भी है इसके अंदर एक चेयर भी है और इसका दरवाजा जो है वो शीशे का है और यहाँ पे लाइट्स भी जल--

यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है इस पेट्रोल पंप के अंदर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है।

और उसके अंदर बहुत सारी गड़िया भी लगी हुई है।

और यहाँ पे कुछ आदमी खड़ा है इसके बगल मे एक घर भी है।

और यहाँ पे कुछ लड़कियां आती जाती नजर आ रही है और इसके बगल मे एक घर भी है।

और उसके बगल मे एक हेल्मेट रखा हुआ है दूसरी साइड मे दो इंसान खड़ा है।

कुछ पौधे भी लगे हुए है जो की गमले मे है और इसका गेट जो है भूरा रंग का है।

जो हर इंसान योगा करते हुए नजर आ रहे है।

और यहाँ पे कुछ पोस्टर मे एक महिला की फोटो है और कुछ लिखी हुई है।

सर्वेक्षण दो हजार बाईस स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार बाईस और यहाँ पे कुच्छ बाइक और कुछ साइकीले भी लगे हुए--

यहाँ पे बहुत सारे दुकान है किसी दुकान मे सब्जी मिल रहा है तो किसी दुकान मे बहुत सारे सामान मिल रहे है।

और इसके चारों साइड बहुत लंबे लंबे पेड़ भी है और यहाँ पे एक महिला सब्जी का--

और दो इंसान बात करते हुए जा रहे है एक ने बेल्ट टांग रखी है।

और यहाँ पे एक शीशी के अंदर भी कुछ केक नजर आ रहा है।